जो कि एक मिट शॉप है और एक आदमी भी हैं।

और एक ऊपर में क्यू_आर कोड भी टंगा हुआ है।

और ऊपर से तारे भी गई हुई है और केले के--

और कोने में लाइट भी जल रही है और दीवाल पे पोस्टर भी टंगा हुआ है किसी बॉडी बिल्डर का।

इस फोटो में हमे सामने के तरफ एक सफेद रंग की टंकी दिख रही है जीसके अंदर में दो तीन पाइप रखे हुए हैं।

इसमें हमे एक रेस्टोरेंट का फोटो दिख रहा है जो कि सामने की तरफ एक टेबल लगा हुआ हैं।

उस पे कोई बैठा नहीं है दो कुर्सी दिख रही हैं और टेबल के ऊपर कुछ नैपकिन रखे हैं।

बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं जोकी झूला झूल रहे हैं।

बीज भंडार का शॉप दिख रहा है जो कि अंदर में कोई आदमी नहीं है।

और उधर भी उसके पीछे भी बहोत सारे समान भी रखे हुए है।

इस फोटो के सामने में मैं बहोत सारी मोटर साइकिले दिख रही है।

और सामने एक गेट भी है जिसपे एयरपोर्ट है।

एक वाइट कलर की बोरी भी रक्खी हुई है।

और एक आदमी और है जो कि चश्मा पहने हुआ है।

दो भैंस आते हुए दिख रही है और एक औरत भी है।

और उसके बगल में दो तीन कुर्सियां भी हैं।

इस फोटो में हमें सामान में एक स्कूल का गेट दिख रहा है जो कि हरे कलर का है।

और एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है पीछे में जिसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं।

और बहोत सारा टेबल पर सिलाय मशीन लगी हुई हैं और बहोत सारे लोग भी हैं।

जो कि सामने में एक भैंस बधी हुई है।

इस फोटो में हमें एक स्कूल दिख रहा है जो की बहोत प्यारा लग रहा है देखने में।

रोड पर एक अंकल जी भी सायकल से आ रहे हैं।

इस फोटो में हमें एक बहोत बड़ी सी ट्रक दिख रही है जिसके ऊपर में--

और एक आदमी भी है जो कि हाथ में कुछ लिए हुए अंदर को जा रहा है।

जिनमें पीले कलर का तिरपाल भी टांगा है और भी त्रिपाल टंगे हुए हैं।

इस फोटो में हमें कपरे की दुकान दिख रही हैं।

और एक कोट जैसा भी है जो की टंगा हुआ है।

इस फोटो में हमें सामने में एक पुल जैसा दिख रहा है दीवार का पिलर है।

और पीछे बहोत बड़ी बड़ी बिल्डिंगे भी है।

और उसके बॉर्डर पर लाल कलर से पेंट हुआ है।

क्योंकि स्टेज पर जो है एक आदमी है जो कि माइक लेकर कुछ बोल रहे हैं।